ये एक हॉल है जिसमे बहोत सारे लोग हैं।

और है ना यहां बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है।

एक और बम चल रहा यहां पे।

और एक आदमी भी खड़ा है जिसके हाथ में बम है।

एक लड़का खड़ा है रेड कलर की शर्ट पहना है ब्लैक कलर का --

और घड़ी भी लगी हुई है और यहां पे न एक टी_वी लगी है सामने--

उसके बाद यहां तीन फैन लगे हैं ब्लैक कलर के।

पीछे बहुत सारे ग्रीन कलर के पेड़ हैं।

और यहां पे है ना क्रीम कलर की वह भी है दीवार--

एक टेबल पे अ बुक और बॉटल रखी है।

और अ अ यहां पे बहुत सी इस अ--

जिसमें दो ठेले हैं एक प्याज का ठेला है प्याज की बहुत सी बोरिया भी बनी है रखी है।

टमाटर गाजर बैगन आलू मिर्च यह सबके--

अ फोर सिलिंग भी व्हाइट कलर की है।

जहां पे ना बहुत सारे बैलून्स लगे हैं ग्रीन ऑरेंज ।

और वाटर कूलर रखे हैं पीछे।

यहां एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी।

और एक आदमी स्कूटी पे बैठा है वाइट कलर की शर्ट में।

और ग्रीन कलर की चेयरे भी रखी हुई है।

ये एक छत है इसके ऊपर से बहुत सारी बिल्डिंगें दिख रही हैं।

यहां पे बोर्ड लिखा है डॉटर नेस्ट गर्ल्स हॉस्टल का बोर्ड लगा है।

यहां पे एक फ्रूट्स की शॉप है जिस पर बहुत सारे फ्रूट्स रखे हैं।

एक गार्डन टाइप का बना है सामने बिल्डिंग बनी है।

आसपास पेड़ पौधे फ्लावर्स हैं दो लड़कियां जा रही हैं।

एक बहोत बड़ा तालाब है जिसके ऊपर पुल बना है।

और दो बच्चे खड़े हैं एक बच्चा मस्त डांस कर खड़ा हो के मस्ती कर रहा है।

और एक बेड भी रखा है जिसमे पर्पल कलर की बेडशीट बिछी है।

डांस स्टूडियो है ए एंड डांस स्टूडियो के नाम से।

और यहां पे डांस स्टूडियो है जहां सामने पोर्टल रखी है।

कुछ लोग जा रहे हैं कुछ लोग ले रहे हैं।

यहां पे पूल बना है बहोत सारे बच्चे लेटे हुए हैं उनकी कुछ प्रैक्टिस हो रही है।

और अ अ बहुत से आज चार पांच लोग खड़े भी हैं इधर-उधर।

कोई कोई रेड कलर की टोपी लगाया कोई ब्लू ।